यहाँ पर वाइट कलर का बेडशीट है जो काफी कम्फ़र्टेबल दिख रहा है और यह काफी प्यरा है बेड काफी डिज़ाइनर है और उनकी कलर बोहत बहुत प्यारी है।